सामने में एक वाइट कलर का मास्क है।

वॉल मे एक येलो कलर इलेक्ट्रिक वायर टंगा हुआ है।

इस दुकान के अंदर बहुत सारा मोबाइल रखी हुई है।

एक स्कॉर्पियो भी नजर आ रहा है।

दुकान के ऊपर मेडिकेयर लिखा हुआ है।

ग्रीन कलर का टीशर्ट हुआ लड़का गिटार पकड़ रहे है।

बड़ा सा फेंसिंग भी लगाया हुआ है।

के आस पास बड़ा बड़ा गच्ची भी है।

एक बाल्टिंग भी रखा हुआ है।

वॉल का कलर येलो नजर आ रहा है।

यह एक लड़का ए_टी_एम की तरफ मुड़ रहा है।

यहां दो इंसान भी मौजूद है।

पीछे में ए ट्वेन्टी ए नाइनटीन लिखा हुआ है।

टेबल के ऊपर कंप्यूटर और झंडा भी रखा हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट का अंदर है।